यहां पे बहोत सारी चेयर रखी हुई है।

चाबी देते हुए नजर आ रहा है पीछे स्कूटी शोरूम है।

बाहर में एक बड़ा सा दीवाल नजर आ रहा है कुछ पेड़ पौधे छोटे छोटे दिखाइ दे रहे है।

एक शेडिंग काउंटर है जहां पे दो साइकिल और दो गाड़ी नजर आ रहे हैं।

यहां पे दुकान के अंदर एक वजनदारी रखा हुआ है और यहां पे एक व्यक्ति चेयर में बैठा हुआ हैं।

और गिट्टी के ऊपर कुछ धामे दिखाई दे रहे है।

घर के नीचे दो बाइक्स खड़ी हैं।

बहोत सारे बालू रखे हुए हैं एक बड़ी गाड़ी नजर आ रही है।

एक हार्ट मशीन दिखाई दे रहा है।

जिम मशीन दिखाई दे रहे हैं।

मैरिज हॉल का स्टेज सजाया गया है।

चप्पलें दिखाई दे रही हैं दुकान के बाहर बहोत सारी चेयर्स लगी हुई हैं।